कोका कोला का एक फ्रिज लगा हुआ है।

पीछे के साइड ए_सी लगी है।

हट भी बनाया गया है।

स्टंप के ऊपर भी बेल्स रखी हुई हैं।

पीछे के साइड ए_सी दिख रही है।

बहुत सारे बैलूनस रख चिपके हुए है।

रिबन्स भी टंगी हुई हैं।

फैन भी दिख रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

हरे कलर के गेट भी लगे हुए हैं।

पलंग भी पड़ी हुई है।

हमें इस फोटो में किसी स्कूल का दृश्य दिखाया गया है।

जिस पर ड्राइंग का आइटम रखा हुआ है।

एक दुकान नजर आ रही है।

का दृश्य दिखाया गया है।

पीछे के साइड एक गेट लगा है।

एक बाइक खड़ी नजर आ रही है।

मंदिर का दृश्य दिखाया गया है।

रोड नजर आ रही है।

किसी पार्किंग का दृश्य दिखाया गया है।

कुर्सी लाल कलर की पड़ी हुई है घर भी --

ऊपर के साइड ए_सी का फैन लगा हुआ है।